ये एक बहोत ही सुंदर घर दिखाई दे रहा है जो नीले और पीले रंग में ब बना हुआ है।

यहां पर बहुत सारे टेबल चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है।

और यहां पर गेट दिखाई दे रही है जो पीले रंग का है।

और गेट दिखाई दे रही है जो आने जाने के रास्ते बने हुए हैं।

और यहां पर बहोत बड़े बड़े चट्टान भी दिखाई दे रही हैं।

इनके ठीक बीच में एक पीले रंग का छतरी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

खाना खाते हुए दिखाई दे रही है एक लड़की ने मुंह पर सफेद रंग का मा--

यह एक हॉस्पिटल है जहां पर कई सारे डॉक्टर --

यहां पर हॉर्लिक्स भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक सोफा सेट दिखाई दे रहा है सोफा पे--

लगे हुए हैंगर बने हुए दिखाई दे रही है।

अब बैग दिखाई दे रहा है जो काले रंग का है एक दरवाजा जो भूरा रंग का दिखाई दे रहा है।

यहां एक घर दिखाई दे रहा है जो लाल रंग का है।

यह एक हिल है जहां पर बीच से झरना बहते हुए दिखाई दे रहा है।

जिला में बहुत सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं चियर टाइप में बना हुआ है।

कुछ बच्चे लाल पीले और काले रंग के कपड़े पहने हैं।

और चारों तरफ से घेरा हुआ है ग्रेल जो काले रंग में है।

यह एक कंपनी है यहां पर बहुत सारे आदमी--

यह एक जमीन दिखाई दे रहा है जमीन पे कुछ भुट्टे दिखाई दे रही हैं।

और औरतें ने बैगनी कलर के सूट पहने हुए दिखाई दे रही हैं और ये कुछ घरे भी दिख रहे हैं।

घर का रंग सफेद रंग का है और अंदर में चिड़ियां भी दिखाई दे रही है घरों के ऊपर कुछ झाड़ें कुछ छोटे छोटे पेड़ भी उगे हुए दिखाई दे रही है।

यह एक मेकअप का दुकान है जहां पर लड़कियों के बहुत सारे सामान--

सफेद और लाल में है खिड़कियों का गेट का कलर --

सत्य निरंकारी सत्यसंग भवन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक काले रंग का बना हुआ कुछ दिखाई दे रहा है और कुछ लाल रंग का एस_ए_टी लिखा है।